चुन्नियाँ टंगी हुई साइड में सूट रखे हुए सूट लगे हुए--

गेट दिख रहा है चैनल गेट लगा हुआ है शटर लगी हुई हैं।

इ घर के बाहर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है किसी लेडीज का फोटो लगा है बैनर पर --

बहुत सारे लेडिस जेंट्स खड़े हुए है बाहर दुकान के बाहर --

यहाँ गाडियां और ऑटो खड़े हुए हैं गाड़ी का पार्किंग दिखाई दे रहा है।

ये ऑटो अम्म कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है सामने ऑटो दिख रहा है साइड में भी एक ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

घर सा बना हुआ है और उसके ऊपर भगवान बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा--

सुंदर सा ये डेकोरेशन किया हुआ है सुंदर सा ये गेट बनाया हुआ है।

एचडीबी बालाजी लिखा हुआ है नीचे एचडीएफसी बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

साइड में भी एक घर बना हुआ दिख रहा है और ये कपड़ों की दुकान दिख रही है।

ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है ये तहसील कार्यालय सा सारा गांव --

बड़ी सी लंबी सी बिल्डिंग है ये रोड सामने दिख रही है बिलकुल ग्राउंड के सामने--

यहाँ डली हुई है बैठने की सामने चेयर पर दो सिस्टर बैठी हुई दिखाई दे रही है।

बाउंड्री के अंदर हम यह बहुत बड़ा सा खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा ये--

और ये गोल बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है काफी बड़ा बाउंड्री हो रही है।